यहां पर बहुत सारे फ्रूट्स के स्टाल है।

ये एक शॉप है जहां पे बहुत सारे फोटोस है फोटो फ्रेम्स हैं।

ये तस्वीर में एक लड़की करी है।

और आगे एक छोटा फ्लावर पॉट भी है।

और आगे छोता सा पाथ है रास्ता है।

पीछे पहाड़ पर फार्मिंग किया गया है।

सभी के चेयर एक कलर के है रेड कलर --

ढाबा के सामने एक टेबल चार चेयर और एक छाता है।

अंदर अंदर पर बहोत सारे कपड़ों का डब्बा डब्बा है।

ऊपर एक लाइट बल्ब है।

बीच में साइकल और साइकल में बहोत सारे बनाना हैं।

यहां पे बहुत सारा चेयर और टेबल्स है।

और ऊपर एक पंखा है और बहुत सारे लाइट्स हैं।

और सामने बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

एक जो स्टील शॉप है और एक में दारु शॉप है जहां पर बहुत सारे दारू है।